और सामने और भी बहुत सारे आदमी खड़े हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए आए हो।

सामने दिख रहा तस्वीर एक पहाड़ की है पहाड़ी इलाके की है जिसमें कोकोनट का पेड़ दिख रहा है।

और एक रास्ता भी जा रहा है जिसमें चार पैर वाले गाय नजर आ रहे हैं।

बड़ा सा पत्थर है पहाड़ी भी बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं।

और ये देखा जाए तो बैठने की व्यवस्था रखी गई है।

और बहुत सारी चेयर्स लगा के रखे गए हैं।

सामने दिख रहा तस्वीर एक चेंजिंग रूम का है।

इसमें आपका बॉडी लोशन शैम्पू फेस वॉश --

सामने दिख रहा तस्वीर में एक लड़का खड़ा है।

लड़का के पीछे एक झरना है।

दो लाइट्स नजर आ रहे हैं दो पोस्टल नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में ग्लास नजर आ रहे हैं बहुत सारे ग्लास नजर आ रहे हैं।

ग्लास बड़ा बड़ा ग्लास है।

बहुत सारे सामान रखे गए हैं जिसमें महिलाएं के पर्स भी हैं।

जिसमें लिखा हुआ है मेंस वेयर लेडीज वेयर्स किड वेयर्स एक्सेसरी ये सारे समान मिल सकते हैं।

यह तस्वीर में एक लड़का नजर आ रहा है।

लड़का के हाथ में घड़ी भी लगा हुआ है लड़का एक रूम के अंदर खड़ा है लड़का के पीछे एक शटल खड़ा है।

सामने ये जो तस्वीर है ये एक फर्नीचर का है यहाँ पे बहुत सारा समान रखा हुआ है जो कि लकड़ी का है।

बगल में एक टैंक दिख रहा है।

और पानी भी फ्रेश नजर आ रहा है और एक दो बैठने के लिए चेयर भी--

बीच में बगीचा है।

और इस भवन पर एक टेमलेट लगा है।

सामने एक योगा रूम दिख रहा है।

जिसमें बहुत से आदमी में औरत महिलाएं मिलकर पुरुष मिलकर योगा कर रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा है दो खिड़कियां नजर आ रही हैं।

जो रास्ता है वह ऊपर की ओर जाने की रास्ता दिख रहा है।

जिस पर प्रोग्राम हो रहे हैं।

और सामने बहुत से आदमी बैठकर देख रहे हैं।

और बगल से पेड़ है बड़ा-सा एक साइड में भी एक और पेड़ है बड़ा-सा बगल में एक टेंट भी है।

और बहुत से आदमी व्यायाम कर रहे हैं।

पार्क के बाहर देखा जाए तो बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है भवन है।

सामने तस्वीर में दिख रहा है कि यह एक कैफे का है।

का हेलमेट के जैसा मिल रहा है और बैलून भी बहुत सारा रखा गया है।

महिलाएं हैं जो कि व्यायाम कर रही हैं योगा कर रही हैं।

जिसमें एक बड़ा सा हॉल है जिसमें एक दरवाजा भी नजर आ रहा है।

और इस यहाँ पे बहुत से गिटार्स भी रखे हुए हैं फिर से हारमोनियम भी रखे गए हैं और एक उम्म काली माता का फोटो भी है।

और बगल में एक पोस्टर भी लगा हुआ है और उस पोस्टर पर लिखा गया है संस्कृति--

सामने एक ऑटो नजर आ रहा है।

बहुत से फोटो भी रखे गए हैं एक पंखा नजर आ रहा है और एक--

लड़का लड़कियां बच्चे--

एक बोतल सामने नजर आ रहा है।

सामने दिख रहा तस्वीर जिसमें एक पुरुष खड़े हैं वह सेल्फी ले रहे हैं।

ऊपर की ओर खींच रही है और गोद में एक बच्ची को ली हुई है पीछे एक एरोप्लेन है इंडिगो का जो उड़ने ही वाला है।

बच्चे लोग बैठे हुए है।

बच्चे सभी बैठे हुए हैं और महिलाएं सेल्फी ले रही है शिक्षिका हो सकती हैं।

बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं हो सकता है शनिवार का दिन हो--

पीछे बहुत बड़ा-बड़ा खिड़कियां भी दी गई है।

सामने एक म्यूज म्यूजिक रूम है।

और बहुत सारे पुरुष और महिलाएं भी हैं और और भी बहुत सारे सामग्री रखे गए है--

सामने एक ऑफिस रूम दिख रहा है।

जिसमें एक पौधा लगाया गया है एक खंबा है। ]

अ दिख रहा जो तस्वीर है वो मॉल का है।

और इसमें बहुत से कपड़े दिए जा रहे हैं हो सकता है मानेवर का भी हो।

सामने एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बहुत सी महिलाएं डांस प्रतियोगिता कर रही हैं.

और बहुत सारे लोग बैठकर देख रहे हैं मजा ले रहे हैं।

पंडाल पंडाल काफी अच्छा बनाया गया है।

अ सजावट किए गए हैं बैलून से बैलून का कलर पिंक एंड ब्लैक है।